यहाँ एक पेट्रोल टंक दिख रहा है जहाँ दो टंकिया लगी हैं दो ट्रक दिख रहे हैं और पेड़ पौधे दिख रहे हैं एक घर भी दिख रहा है और बहुत सारी गाड़ियां भी हैं।

एक ज़मीन दिख रही है जहाँ बहुत सारी हरी भरी म्म पेड़ पौधे और घासें दिख रही हैं।

ये एक दुकान है जहाँ बहुत सारी अगरबत्तियां मोमबत्तियां मैगी और नूडल्स और कुछ नमकीनें रखी हैं।

एक दुकान है जहाँ बहुत सारीचिप्स और टॉफियाँ और अंडे का ट्रे भी रखा है |

दुकानदार सब्जियाँ बेच रहा है जिन मे बहुत सारी हरे-हरे मिर्च हैं।

मिर्च कई प्रकार के होते हैं और इन्हें सब्जियों में डाल के खाया जा --

यहाँ एक फील्ड दिख रहा है। जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए है। और एक साइकिल दिख रही है। और कुछ घरे दिख रही हैं और पेड़ पौधे भी दिख रहे --